घड़ी लगी हुई है तथा दिवाल पे छो साइड में एक--

दिवाल की साइड में दो स्पॉट्स --

रूम में जहां पे बर्थडे का डेकोरेशन किया गया है तो उसमें बहुत सारे बैलून लगाए गए हैं।

ऑरेंज फैन सब तमाम प्रकार के फैन बिक रहे हैं।

समाने बनाई गई हैं जैसे कुर्सी मेज दरवाजा वगैरा बनाए गए हैं इसमें बस लकड़ी लकड़ी के बनाए गए इसमें सोफे अभी नहीं लगे हुए हैं और दीवाल जो इसमें इस रूम की जो दीवाल है ओ स्काई ब्लू कलर की है।

ये कोई एक कॉलेज की सीन है जहां पे ग्राउंड की सीन है जहां पे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को गेम सिखाया जा रहा है। एक आद ठंडी का समय लग रहा है।

ये कोई बुक की शॉप है जिसका नाम विगन्न वुक सेंट्री ।

साइड साइड में तीन आदमी है बीच में एक लड़की है जो सामान--

ये पिंक कलर का और ब्लू कलर का पैंट पहने हुए और ऊपर की तरफ एक टोपी लगाए हुए हैं और मस्जिद में एक घड़ी घड़ी भी लगी हुई है तथा साइड में एक बोर्ड भी है जिसमें--

ये छोटा सा स्टोर है--

ये बैग वगैरा है इस--

ये जो डब्बे में रखी गई एक गु गुड़िया है।

एक औरत है जो मशीन को चला रही है हैंड पंप

और साइड में एक टेंट लगा हुआ जो।

और इसके ऊपर करकट है।

एक आगे की तरफ एक पेड़ है जिसमें लाइट्स लगी एक छोटी सी लाइट्स लगी हुई है बल्ब लगा हुआ है आम का पेड़ है। नीचे की तरफ झूला भी बना हुआ है। साइड में एक पेड़ भी लगा हुआ है।

बनाए गए है लकड़ी के समान जो है और इसमे अभी--

छोटा मोटा रेस्टुरेंट टाइप का है जिसमें जिसको पीले और रेड और ब्लैक कलर से बैलून से डेकोरेट किया गया--

लाइट्स लगी हुई हैं येलो येलो कलर की।

चेयर्स लगीरे लगी हुई हैं मेज टंगे हुए हैं।

वे घर है जिसमें आगे के साइड एक डोर लगा हुआ है और--

रूम के ऊपर ऊपर खिड़की लगी हुई है।

और इस इसमें सीढ़ियों में रेलिंग लगी हुई है।

कोई ऑटो की दुकान है जहां से ऑटो वाले ऑटो ले रहे है दो साइड में आदमी है बीच में ऑटो है।

ये एक झरना है जहां से पानी आ रहा है। साइड साइड में ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है। साइड में एक बॉटल है।

और ऊपर से पानी आ रहा है।

एक बहुत सुंदर सा बहुत प्यारा सा घर है जिसमें सारा घर है चारों के तरफ चारों तरफ टाइल्स लगी हुई हैं ऊपर की तरफ व्हाइट फैन लगा हुआ है और मिरर है मिरर की तरफ में--

एक लड़की स्कूटी से आ रही है तथा अंदर की तरफ में दो आदमी है जो--